किया हुआ है और येलो कलर वॉल साइड में ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

जो येलो मिक्स वाला ऐसा लगा के है।

बाद जो टेबल है और जो आगे में जो टीचर का टेबल है वो व्हाइट कलर है इस--

जो कि बहुत सुंदर लग रहा है।